जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय।

और लकड़ी के गेट लगे हैं जो की अलमारी बनी हुई है उसके ऊपर एक--

छोटे छोटे क्लिप और एक ओनली कैमियो --

और इनको छोटे छोटे से भी निकले और यह कितने कितने दूर से दिखाई दे रही है कितना ।

यहां पे मुझे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है जीवन।

अरे वो देखो लाइट दिखाई दे रहा--

कैनेरा बैंक जिसका ए_टी_एम दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक व्यक्ति गया हुआ है।

हां तो दोस्तों मुझे सामने कुछ कंबल पड़े हैं और उसके ऊपर लिखा है।